रहने के लिए आते हैं और उसके पास ही एक हॉस्पिटल भी स्थित है।

बहुत सारे ऑफिस मे लोग काम करते है और उस ऑफिस को आगे की ओर बढ़ाते भी है।

कई प्रकार के समान बेची व खरीदे जाते हैं यहां कस्टमर --

यहां से सवारियां एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर बढ़ती है।

और इसके चर्चेज भी बहुत कम है यह मोहन ढाबा दो हजार दस का है।

के है एक वाजिवी रेट पे अपना समान--

जिसमें कईं प्रकार के समान प्राप्त होते है यह व्यक्ति बहुत ही --

मना करते हुए कहीं पालन करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए --

यह एक लाइब्रेरी की तस्वीर है जहां पर आये दिन कांड होते रहते है।

यह एक जिम की तस्वीर है जहां पर कई सामान--

बाकी लोगों को बर्बाद करने के लिए ये सब ढोंग करते है।

जहां कहीं प्रकार के क्लास नोटें इत्यादि सामान प्राप्त होते हैं।